इत जिराफ़ दूगो जिराफ़ जंगल मै गेरल है तार से पेड़ बहुत निकले है उजर् -उजर् गुमाइरत है।

पेर है। गुमाइएत है ए-ए- म आदमी है आदमी जाता होगा की नहीं नही ।

ई-ई-तो बीच में सूरज का किरण लिखल लग रहा है एक-दो-तीन-चार सैनिक लिखल लगता है ये सब और अ बीच में कुछ लिखा है।

छोट-छोट नहीं बुझा पर रहा है तीन ठो लिखा हुआ है बगल मे फोटो है फेन चार गो बीच मे जवान लेकिन खड़ा--

नीचे चोट्टी लिखल हरियर हेय उधर लाल हेय बिछावल कथी दनी।

ऐसबीआय बेंक है यहाँ पे रोड है हे ऊपर अखरा घर है पैंट किया है बहुत ही बाइक है वो आदमी बाइक पर बैठा हुआ है बहुत सारा आदमी है।